इसमें जो कार दिख रही है वो ब्लैक एंड मेहरून कलर की है। इसके आसपास जो खम्भे हैं वो रेड कलर के हैं।

इसके आस-पास कुछ गाड़िया भी खड़ी हुई हैं जो ब्लैक कलर की दिख रही हैं। इसके आस-पास कुछ पेड़-पौधे भी हैं जो ग्रीन एंड ब्लैक कलर के दिख रहे हैं।

इसमें जो रिक्शा दिख रहा है उस रिक्शे पर जो कलर है वो रेड येलो एंड ग्रीन कलर है कुछ ब्लैक कलर भी दिख रहा है।

इनके पीछे जो परदे लगे हुए हैं वो ब्लैक कलर के इनके पीछे कुछ गोल्डन एण्ड बालू सा भी दिख रहा है।

इस चित्र में जो पार्लर दिख रहा है उस पार्लर के अंदर ग्रीन येलो ब्लू कलर सा दिख रहा है कुछ पर्पल सा भी दिख रहा है।

इस चित्र मे कुछ गाड़ियां दिख रहीं है जो सिल्वर कलर की एण्ड ब्लैक कलर की है जो व्हाइट एण्ड ब्लैक कलर की है उनके आस-पास साइकिल खड़ी है कुछ गाड़ियां भी दिख रही है।

कुछ पंखे भी लगे हुए हैं इस हॉल में कुछ बेंचें भी रखी हुई हैं उन बेंचों पर बहुत सारे कंप्यूटर भी रखे हैं इस हॉल में कुछ लोग भी दिख रहें हैं।

इसमें जो तालाब दिख रहा है उस तालाब में कुछ झोपड़ियां डूबी हुई हैं इस तालाब में एक बड़ा सा बिजली का खंबा भी दिख रहा है।

इस चित्र में जो मकान देख रहा है उस मकान पर जो कलर है वह व्हाइट और ब्राउन कलर है।